बस स्टैंड हैं जिसमें में एक बस खड़ी हुई है जो बस सफेद रंग की है जिसमें लाल धारिया बनी हुई हैंऊपर--

एक होटल पैलेस है होटल पैलेस में एक गड्डा है उस गड्डे से एक पानी बोरिंग मशीन लगी हुयी है।

सरम्य्कल लगा हुआ है ऊपर एक खिड़की हैं बीच वाली बिल्डिंग में एक विंडो लगी हुई है और कुछ टार भी दिखाई दे रहे हैं।